और वहां पे एक स्विमिंग पूल भी है जोकि बहोत ही बड़ा सा है।

और ये पूरा खाली जगह है कुछ लोग बैठे हैं कुछ बच्चे खेल रहे हैं।

कुछ अ मोरंग रखी हुई है कुछ सीमेंट रखा हुआ है या तो कुछ गिट्टियां रखी हुई हैं।

अह अकबर की की फोटो लगी हुई है।

कुछ अलग तरीके की गिट्टियां पड़ी हुई हैं वहां पे ढेर सारी सरियां लगी हुई है।

बहुत ज्यादा मौरंग का ढेर लगा हुआ है कुछ गिट्टियों का ढेर लगा हुआ है।

वे जूते पहने हुए हैं और ओ किसी पहाड़ के बड़े पत्थर पे खड़ा है।

कुछ लोग अ एक दूसरे से बात कर रहे हैं बहुत सारे लोग जो है अपने मुंह पर मार्क्स लगाए हुए हैं।

जिसमें अलग अलग तरीके की चीज़ लिखी हुई है जिसमें अर्थराइट्स है स्पॉन्डिलाइटिस है।